यह तस्वीर किसी पैलेस के स्टेज की है।

यहां पर चार से पांच आदमी खड़े हैं।

कुछ दुकाने भी लगी हुई हैं सामने ही छोटे बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं।

शो रूम के सामने एक ग्रीन कलर का मैंट पड़ा हुआ है।

तीन अह गमले भी लगे हुए हैं।

सामने ही दो सोफे पड़े हैं जिसका रंग पीला है सामने स्टेज पर लाइटें लगी हुई हैं।

यह तस्वीर किसी के घर की है।

यहां पर बहुत सारी कुर्सियां पड़ी है यहां--

यह एक फर्नीचर की शॉप है यहां पर अलग अलग तरह की अलमारी--

यह एक टैनिस ग्राउंड की पिक्चर है जिसमें पांच आदमी खड़े हैं एक आदमी--

यहां पिंक कलर की बस और ग्रीन कलर की बस खड़ी है।

आसपास हरे रंग के पेड़ लगे हुए हैं।

यहं एक पोस्ट ऑफिस की पिक्चर हैं।

सफेद रंग की कार है यह मेन रोड पर स्थित है।

यहां पर तीन लड़के खड़े हैं।

ये तस्वीर एक डेंटिस्ट क्लीनिंग की है।

यहां पर काफी बैम्बूस लगे हुए हैं जिसके ऊपर एक--

इस शॉप की ओपनिंग की फोटो है।

पूजा चल रही है पंडित जी--

यह एक पैलेस के हाल की तस्वीर है।

येह तस्वीर घर में बने एक मंदिर की है जहां पर ये--

यहां पर एक बेड पड़ा है सामने ही एक ब्राउन कलर की कुर्सी भी पड़ी हुई है।